तीन लड़के है एक लड़की है।

और चेस्ट प्रेस बेंच प्रेस बहुत ही सारी चीज़ें रखी हुई है।

व्यक्तियाँ मैं गीन नहीं सकती--

इस तस्वीर में काफी खूबसूरत नजारा हैं

यह एक मैदान है जहाँ पार्टी का--

यह शाम का वक़्त है सबकी केबिन पे सबकी केबिन खाली है खाली किताबे --

पक्के हुए है और जो हरे टमाटर है वो कच्चे है और कुछ टमाटर सड़े हुए भी है।

जिसका नाम है छत्तीसगढ़ होटल जहाँ पे स्वीट्स एंड नमकीन मिलती हैं ।

एक व्यक्ति ने लाल कलर की टी-शर्ट पहनी हुई हैं ।

इस इमेज मैं एक डेरी पार्लर दिखाया हुआ है।

इस पेड़ पर पेंटिंग की हुई है पेंटिंग में फूल बनाये हुए है येलो कलर से--

बच्चा खेती कर रहा है।

रेड एंड वाइट लाइनिंग की टी शर्ट पेहनी हुई है।

--का नाम है चौक सौराई रोड गया गया की यह गाड़ी है।

घर है जहाँ नीचे मंडप लगा हुआ है।